इस चित्र में किसी चर्च को दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं बाहर भी बहुत आदमी खड़े हैं औरत भी हैं।

बाहर एक लाइट भी जल रही है कुछ लोग मोमबत्ती जलाते हुए नजर आ रहे हैं।

जैसे कि केला सफेदा आम पपीता सेब अनार ।

सड़क के दोनों तरफ़ कुछ पेड़ पौधे मौजूद है सड़क के एक तरफ।

दो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं एक डॉक्टर बगल में कोई मेडिसिन ले रहे --

इस चित्र में दो बड़ी-बड़ी सड़क नजर आ रही है एक सड़क फाका है दूसरे सड़क पर।

इस चित्र में कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का रंग सफेद और लाल है बिल्डिंग के बाहर सड़क नजर आ रही है।

सड़क पर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं सड़क के दोनों साइड लोहे का रेलिंग बनाया हुआ है।

जिनमें से दो तीन औरतें भी नजर आ रही है एक औरत दूसरी औरत से बात करती हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में टैटू स्टूडियो को दिखाया गया है यहां पर दीवाल पर बहुत सारे टैटू का फोटो लगा हुआ है कुछ।

पैंट शर्ट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे।

इस चित्र में एक रूम के अंदर कुछ ऊंचे चेयर कुछ नीचे चेयर दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ मोबाइल के कवर भी नजर आ रहे हैं।